यहां पे एक कालीन बिछा हुआ है ग्रीन कलर का और एक माइक और पियानो है जो तार लगा हुआ है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर का।

कलर पीला और ब्लू व्हाइट है उसपे ब्लू कलर का बैनर भी लगा हुआ है।

वह ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसके ऊपर चार खिड़कियां है जिस पर ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ है।

एक पर्दा है और यहां पे एक मीटर भी है एक बोर्ड भी है जो वाइट कलर का है।

यहा पे दो तीन मूर्ति भी है इस पर सूट पहनाया हुआ है रेड कलर ब्लू कलर वाइट कलर का।

पानी व्हाइट एंड ग्रीन है यहां बहुत सारे मिट्टी भी दिख रहे है और बालू भी दिख रहे है।

एक वाइट ब्लू सिल्वर है एक पिंक कलर का है यहां पर एक ब्लू कलर का भी है।

व्हाइट कलर का झालर लटकाया हुआ है यहां पांच छह रोशनदान भी है।

यह स्टेज के ऊपर एक कालीन बिछा हुआ है जो लाल और ग्रीन कलर का है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहां पे बहुत सारे एटा रखे हुए हैं।

उसे पे होम डिलीवरी लिखा हुआ है और यहां पे मेकिंग योर होम मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है।

पर लोहा सिल्वर एंड फुल ब्लैक है और यहां पे वाइट कलर का टाइल्स बिछा हुआ है।

इसमें ब्लैक कलर का डॉट है यहां पे मिर्चा भी है जिसमें ग्रीन कलर का है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और बिल्डिंग भी है।

यहां पे बहुत सारी बच्चियों हैं भी है जो वाइट कलर का सूट पहनी है।

और इसके बगल में कपड़ा दुकान भी है यहां पे शर्ट और जींस टांगा हु--

यह एक गार्डन का दृश्य है जहां पे एक मोर खड़ा है व प्राण व्हाइट और ब्लू कलर का है।

यहां पे बहोत सारे केतारी का पेड़ भी लगा हुआ है जिसका पत्ता ग्रीन एंड ब्राउन है।

यहां पे लकड़ी भी काट कर लगाया हुआ है और कपड़े भी टांगे हुए हैं जो व्हाइट एंड ब्लैक है।

उसके ऊपर बहोत सारे फाइल रखे हुए हैं जो ब्लू कलर का है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पे एक त्रिपाल लगा हुआ।

इसमें सीताराम नंदलाल लिखा हुआ है और बर्तन का फोटो चिपकाया हुआ है।

वह वाइट कलर का है और चारों तरफ व्हाइट कलर से पुट्टी हुआ है।

यहां पे बहोत सारे पत्ते गिरे हुए हैं यहां पे बहोत बड़ा बाउंड्री मारा हुआ है ऑरेंज और लाल कलर का।

एक एक चंपाकल भी लगाया गया है यहां बहुत सारे घास फूंस हैं।

एक वाइट कलर का पंखा लगा हुआ है यहां पे खिड़की है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है इसमें अनमोल कंपलेक्स लिखा हुआ है।